यहां पे एक शॉप है बुक्स उस पे लिखा हुआ है जो हमें दिख रहा है।

यहाँ पे हमको एक ऐतिहासिक किला दिख रहा है।

तो यहाँ पे पर्यटन करते है और ये बहोत ही एतिहासिक किला है ।

और उनके फैमिली वाले सब लोग बैठे हुए हैं।

और यहाँ पर कस्टमर लो खड़े होते है सर्विस ले रहे है यहाँ अपना और ऑर्डर दे रहे है इसमें --

अ ऊंची ऊंची बिल्डिगें हैं जिसमें बच्चे--

हाँ पे वाशरूम लिया हुआ है साइड में ए सी हॉल है।

यहां कुर्सी और मेज़ लगाके अपना वर्क कर रहा है और अदर परसन यहां पर नहीं दिख रहे है।

ये एक मैरीड लॉन है जहां पे शादी का सीजन है इस समय ।

शादी चल रही है यहाँ पे सजावट बहुत अच्छा हुआ है।

रेस्टोरेंट में खाने को होगा वो दिखा रहा है यहा पे अ और चेयर खाली है बट प्लेट जो मेज पे लगे हुए हैं--

बहुत ही अ यूनीक लगे हुए हैं बहुत अ--

अ किसी चीज़ की बारात है या अ जुलूस है।

और इसके चारों तरफ इतनी हरियाली है इतना अच्छा सुंदर प्राकृतिक दृश्य लग रहा है ये।

तार में लाइट तार में लाइट अ हो सकता है खराबी हो या कुछ भी खराबी हो।

और यहाँ पे और बोहोत ही अच्छा लग रहा है।

और यहाँ पे तरह तरह की बिल्डिंगे है कोई पंछी उड रहे हैं--

यह एक पार्लर सैलून है यहां पे आ आ बांदर है यहां पे ड्यूटी लगी हुई है।

ये एक मार्केट है यहाँ पे कई लोग अपना अ--

और यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए हैं कोई पिक ले रहा है अ--

और ये एक हॉल में योगा सीख रहे हैं बच्चे।

यहां पर एक दुकान है जहां पे फ्लावर पॉट मिलते हैं जो हम लोग वो फ्लावर लगते हैं ना वो फ्लावर पॉट मिलते हैं छोटे बड़े सब फ्लावर पॉट मिलते--

जैसे एक दो तीन चार पांच मोर है यहां पे औ जब ये पंख पसारते हैं न तो बहीत ही अच्छा लगता है मनमोहन लगता है मन को छू देने वाला लगता है ये।

यहां पे आ हम देख सकते हैं की बहुत सारी लेडिस है ये पूजा पाठ का घर लग रहा है।

और ये हमार मान के चलिए की छट पूजा का है छट पूजा में अ ये सब ओरते बेठी हुई है सूरज भगवान को अर्क दे रही है।

यहाँ हम देख पा रहे है की एक बाँदा है जो फ़ीस बेच रहा है जो फ़ीस की सेल्लिंग कर रहा है।

यहाँ पे देख पा रहे हैं चार पांच प्लेट्स है जो एक होटल के हैं।

ये हमको एक बड़ा सा हॉल टाइप का पार्लर दिख रहा है ।

यहाँ पे अ यहाँ पे लेडिज और जेंट्स दोनों है यहाँ पे पारलर का सामान रखा है अलमारी में लाइटे जल रही है आच्छी --

ये हम देख पा रहे है सनातन धन मंदिर है यहाँ--

ये सनातन धर्म मंदिर जगह जगह पे भी पाए जाते हैं जो इसके अ भक्त होते हैं।

उसको बना रहा है अच्छे से और ये किसी कस्टमर की कार है।

जो देनी है उसको और यहाँ पे बाइक खडी हुई है का यातायात चल रही है और ये जो शॉप है ये रोड पे ही है।

ये एक पार्क है जहा पे बच्चे ना अम्म--

और यहां पे अह कई लोग बैठे हैं कई लोग खड़े हैं।

ये किराने की शॉप है यहाँ बोरियों मे अ अनाज रखे हुए है ।

यूज़ करते है और यहाँ एक आदमी जो है--

और बैठ के अपने विक्रेता है वो अपना सामान--

ये कोई अ हिल स्टेशन है जहा पर ब- ब- बोहोत अच्छी नदी बेह रही है और यहाँ पर कई लोग बोटिंग कर रहे है।

ये हम देख पा रही है ये एक साडी सेण्टर विना साडी सेण्टर ये साडी की शॉप है यहाँ है तरह के लहंगे --

पानी वगेरा लगे हुए है बहोत ही अच्छे दिख रहे है यहाँ से।